इधर एक आदमी बैठा हुआ हैं जिसने वाइट शर्ट पहना हैं। एक औरत एक औरत खड़ी हैं।

यह एक बूक लायब्ररी है यहा पर बहुत सारी किताबे रखी हुई है यहा पर तीन बच्चे है एक मॅडम है जो चाय पी रहे है।

एवम कुछ लड़किया एवम कुछ पुरुष है जो पूजा कर रहे है यहाँ पर पांडाल को सजाया गया है।

जिम की दीवार पर एक स्विच भी लगा हुआ है साथ ही और भी सामान रखे हुए है।

यह एक शादी समारोह का स्टेज है स्टेज पर दूल्हा दो बच्छे के साथ बैठा हुआ है स्टेज पर दो व्यक्ति खड़े हुए है।

मकान के बाहर कुछ महिलाए खड़ी हुई है जिनमे से छे महिलाओं ने एक ही तरह की ड्रेस पहनी है और एक महिलाने अलग तरह की ड्रेस पहनी है।

यहाँ पर मुसलमानों का त्योहार चल रहा है ताजिया है मशीद है मशीद का रंग सफ़ेद है एवम सुनहरे कलर के--